इसे यूज करने के लिए और ये लाइटिंग वगैरह है यहां--

अ और जैसी चटाई बिछाई है नीचे में और सब खड़े है चटाई के ऊपर एक्सरसाइज कर रहे है।